मुझे यहाँ पर एक कार दिखाई दे रही है और मुझे यहाँ पर कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे है।

और मुझे यहाँ पर एक मिस्त्री भी दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ पर लोहा भी दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ पर बिजली के तार भी दिखाई दे रहे--